इस तस्वीर मे यह दिखाई दे रहा है कि एक चार पहिया वाहन खड़ी हुई है।

इस तस्वीर में नजर आ रहा है कि एक झील है जिसके आसपास पेड़ पौधे लगे हुए हैं और कुछ पथेरे नजर आ रहे हैं।

तस्वीर मे ये दिखाई दे रहा है की कुछ महिलायें नृत्यया नृत्य कला दिखा रही है और --

इस तस्वीर में यह दिखाई दे रहा है कि एक दुकान है जिसमे बहोत सारा सामान डला हुआ है आसपास --

इस तस्वीर में यह दिखाई दे रहा है कि एक झील है जिस के आसपास कुछ लोग दिख रहे हैं कुछ नजर आ रहे हैं आसमान दिख रहा और कुछ नाव नजर आ रही हैं।